कबाली हो रही है तबला बजा रहे हैं।

एक जाली लगी हुई है लंबी हरे कलर की --

इस क्षेत्र के अंदर बहुत प्यारा घर बना हुआ है।

ब्लैक कलर की सीढ़ियां लगी हुई है।

और तालाब में बहुत खूबसूरत सा नजारा है।

इसमें बहुत सारेफ्लावर टांगे हुए हैं।

और कुछ गुलदस्ता है गुलदस्ते रखे हुए हैं।

बिल्डिंग बनी हुई है जिस पे लिखा है।

इस चित्र में हमें एक खूबसूरत नजारा दिख रहा है।

एक आदमी सबको दवाएं बांट रहा है।

और वो पर्ची पर कुछ लिख र दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक शादी हॉल दिख रहा है।

जो इस मोटर में काम कर रहे हैं एक व्यक्ति वो मोटर में काम कर रहा है।

और वाइट कलर की पोते हुए कुछ घर--

चट्टानों पर खूब सारे पत्थर दिख रहे हैं।

चित्र के अंदर हमें स्कूल में कुछ बच्चे --

पेड़-पौधे लगे हुए हैं और बाहर इसके कार और बाइक्स भी --

वो फोटो खींच रहा है।

और पीछे से हमें ग्राउंड दिख रहा है और ग्रीन कलर के कुछ पौ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और कुछ व्यक्ति स्टेशन पर रेल का इंतजार करते हुए बैठे हुए दिख रहे हैं।

और इसधर पंखे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

क्लीनर रखे हुए हैं वाइपर है दिख रहे हैं।

और ये पार्क नजर आ रहा है।

और वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए--

चित्र के अंदर हमें एक होटल दिख रहा है।

इसके ऊपर प्यूपी भी करा हुआ है।

दिख रहा है इस्कूल के अंदर हमें कुछ इस्टूडेंट्स --

बच्चे ने पतंजलि टेस्टी नमकीन ढावर का--

ब्लैक एक ब्लैक कलर का दरवाजा भी दिख रहा है।

ग्री उस पे कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं और पक्की सड़क भी बनी हुई दिख रही --

और खूब सारे चित्र भी दिख रहे हैं।

और कपड़े भी दिख रहे हैं।

सड़क नजर आ रही है।

अअ उस अ व्व लोहे का बना हुआ--

इस चित्र के अंदर हमें मस्जिद दिख रही है।

बनी हुई है इसके बाहर--

लाइब्रेरी शॉप दिख रही है ।